और ऊपर जो प्लस का निशान लगा है यो लगता है मुझे ये चर्च है क्योंकि चर्च वालों का ही ऐसा निशान होता है।

अंदर एक नीली कलर की चेयर नजर आ रही है और दोनों तरफ से सीढ़ियां लगी हुई है।

यहां पे दो पोल है पोल की तारे पीछे हुई है।

यह नकली फूल है लेकिन बहोत ही सुंदर है और इसे हम अपनी कमरे की डेकोरेशन कर सकते है।

बहोत ही मनमोहक दृश्य है दो ही पेड़ मुझे नजर आ रहे हैं जो की बहोत बड़े बड़े है जो पीछे वाले वो बहोत छोटे छोटे नजर आ रहे है।

यहां बैंक है और यहां पर एस_आई_बी लिखा हुआ पी_एन_बी भी है कोई और भी है।

और यहां पर सोफे भी लगे हुए हैं दीवारों पर बैनर्स लगे हुए हैं और एक बूढी महिला नीचे बैठी हुई है और यह किसी को देख रही है बाहर झांक रही है।